उ पर एकदम झील जैसन पूरा दोनों तरफ पहाड़ और आगे भी पहाड़ पूरा आसमान पूरा काला और थोड़ा बहुत हरा-भरा जंगल।